यहाँ पर हमें कुछ तीन प्रकार के फैशन के कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो की दिखने में बहुत ही सुंदर है एक कोर्ट भी है जो की सफेद सा कलर का है और नी ल लाल से कलर का है।